यह आदमी दी काम कर रहा है पीठ पे खड़ा कर के| खड़ा कर के कुछ कर रहा है| तीन थो चेयर लगा हुआ है।

बरफीली हवा है| बगल में पानी का ट टब है| पीछे गा गार्डन है| गार्डन में बहुत सारे फूल है वाइट पीला ग्रीन | अंद अंदर दो चार फालतू इंसान है बगल में गाडी है।

कथली उथली हुई हैं पार कर रहे है सेंडल लगे लेके हाथ में | तोह गैब टांगे हुए हैं| बगल मैं नाव हैं| एक पौधा हैं| ऊपर तार हैं।

ए_टी_एम का ए_टी_एम है जहा का फोटो पिक्चर लिया गया है| यहाँ पर बाइक खड़ा है| यहाँ पे इंसान पैसा निकलने आते है और पैसा डालने आते है।

यहां पे देख रहे है ये भाईसाब मोटर के पाइप से पानी पानी दाल रहे है यहा पे ऊपर बहुत सारे शर्ट उट टांगे हुए हैं।

यह पिक्चर किसी शादी या स्थल का लिया गया है जहा पे शादी शादी हो रहा है| यहाँ पे दो भाई साहब अपना पोज़ मैं खड़े हुए हैं| ऐ एक भाई साहब बात कर रहे हैं।

होली का यह होली का समय का फोटो लिया गया है जहा पे यह सब खड़ा होकर फोटो खिचवा रहा हैं| गुलाल और विविद रंग लगाए हुए हैं।

फोट मैं फिश फिश मार्किट के आधार पे मछली बिकता है| यहाँ पे यह आदमी बेच क मछली को बेच रहा है| यहाँ पे तराज़ू लगा रखा हुआ है।

यह पिचर किसी समारोह का लिया गया है जहाँ पे जहाँ पे ये सब गधे बैठे हुए हैं वहाँ पर एक लड़का को देख रहे हो जो गाना गा रहा है वहाँ पर एक आदमी को भी देख रहे हो जो पोडियम पे खड़ा हुआ है यहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं।

कुछ खरा उ कुछ खरा आदमी खड़ा हुआ है| वह बोहोत सारा दराकस हैं।